यखम एक छत छ दिखेण लग्युं जैका एंच यू लैंटर छन डलना ओर पोर हमते कुछ सरिया भी छिन दिखेण लगीं जु बिम छिन।

मंडप का ओर-पोर हमथे कुछ छोटी-छोटी मूर्ति छन दिखेण लगीं अ भौत सुन्दर सजावट छ दिखेण लगीं।